ये चर्च की तस्वीर है जिसमें--

कुछ लोग बैठ कर खाना खा रहे हैं।

ये तस्वीर किसी मंदिर की हैं।

यह आदमी अपनी तस्वीर करवा रहा है।

एक लड़का बैठकर लैपटॉप पर--

सामने मिरर में काफी सारे गोगल्स भी पड़े हैं।

माता लक्ष्मी जी की माता सरस्वती जी की गणेश जी की मूर्तियां भी रखी हुई हैं।

यह दृश्य मॉल का है मॉल में--

येलो कलर का पटका भी पेहना हैं।

ले में काफी सारे अलग अलग प्रकार के झुके लगे हुए हैं।

इसके साइड में यीशु मसीह के चित--

इसके बाद बहुत ही सुंदर हरे भरे--

एक वृक्ष जो पिंजरे के बिल्कुल पास है।

एक ते तो आइसक्रीम के फ्लेवर्स अलग अलग है।

इन सब ने टेबल पर अपना समान रखा हुआ है।

टोल टैक्स में काफी गाड़ियां खड़ी हैं।

सामने एक बड़ा मिरर लगा है।